बैठे हुए हैं एक टीचर इनको पढ़ा रही है ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है इस रूम में काफी रंग बिरंगा कलर किया हुआ है बहोत --

शाम के टाइम की फोटो है रोड की फोटो है जिसमें खंभे दिख रहे हैं गाडियां दिख रही है दुकानें हैं थोड़ी बहुत एक --

इस स्टेशन पर एक नीले रंग का डस्टबिन रखा हुआ है इसपे बैठने के लिए टेबलें कुर्सियां रखी हुई है।

लोग अपना सामान लेकर आ जा रहे हैं कुछ ट्रेन से उत्तर हैं कुछ चढ़ रहे हैं पास में ही खाने पीने की दुकान भी है।

टैक्सीयाए खड़ी टैक्सी और गाड़ीया बोहोत सारी खड़ी है मोटर साईकलस खड़ी है लोग आस-पास घूम रहे है टैक्सीयो के आस-पास भी है।

कॉफ़ी की दुकान है कॉफी वगैरा रखे हुए हैं कप रखे हुए हैं डिस्पोजल वाले फ्रिज भी रखा हुआ है यें एक आदमी इसमें --

इस पिक्चर में यह एक मैदान की पिक्चर है इसमें पेड़ लगे हुए हैं छोटी छोटी हरी घास लगी हुई है पौधे भी लगे हुए हैं।

ये कोई महल के अंदर की फोटो है जिसके ऊपर एक बंदूक टंगी हुई है।

सेकंड फ्लोर पर कोई शॉप है और नीचे भी हैं इसके आसपास बहोत से लोग घूम रहे हैं एक कच्ची दुकान भी है।

रोड की पिक्चर है इस रोड पर एक दुकान है काजरिया आशियाना डेस्कटॉप --

इस पिक्चर में यह एक पोस्ट ऑफिस का ड्रम है जिसमें क्लीयरेंस लिखा हुआ है जिसमें --

एक ग्रीन रंग का डस्टबिन रखा हुआ है पीने के पानी के ना लगे हुए हैं इसके ऊपर पुल बना हुआ है।